और जो पट्टी कलर है वो लाल मे है नीचे भी लाल है जो पोस्टर का कलर है पीला कलर मे है।

इधर गुब्बारा सजाया हुआ है नीला वाइट लाल दो लाइट लगा है एक ए सी लगा है कुर्सी टेबल --

एक सौ आठ शांति नाथ दिगम्बर जैन --

इसका कलर है बादमी कलर से है।